मुझे इस तस्वीर में तीना से बना हुआ बहुत सारा घर डिखाई डे रहा है।

खिड़की में सफेद रंग का पर्दे भी लगा के रखा है।

दूर में बड़ा सा एक ब्रिज भी दिखाई दे रहा है।

साइड में दो घर भी दिखाई दे रहा है।

दूर में दो मनुष्य भी दिखाई दे रहा है।

घर के ऊपर में बड़ा सा बैनर भी लगा के रखा है।

डोर के सामने दो रेड कलर का चेयर भी रखा हुआ है।

सामने एक पिंक कलर का ड्रॉ भी दिख रहा है।

दीवार में बहुत सारा कपड़ा भी टंगा के रखा है।

नीचे में ग्रीन कलर का कार्पेट भी बिछा के रखा है सामने एक टूल भी रखा हुआ है।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

मे बहुत सारा फूल से डिजाइन बनाके रखा है।

पीछे बरा बरा अलमारी भी दिखाई दे रहा है।

टंगा के रखा है दरवाजा के सामने सफेद रंग का बादल भी टंगा के रखा है।

ऊपर में बड़ा ब्ल्यू कलर का बड़ा से बोर्ड लगा के रखा है।

और सफेद रंग का गारी भी पार्किंग करके डिखाई डे रहा है।

ऊपर में रस्सी में पेपर भी टंगा के रखा है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत सारा मनुष्य दिखाई दे रहा है।

दूर में एक टीना से बना हुआ घर भी दिख रहा है।

और घर के बाहर में बड़ा सा साइन बोर्ड भी लगा के रखा है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा है।